हम नदी में तीन किश्तियों को देख सकते हैं एक किश्ती उल्टी पड़ी है।

यहे एक बहोत बड़ी जगह में बने घर का दृश्य है।

यह रिक्शा बहुत ही कलरफुल है।

जोकि घर के कपड़ों में स्कूल आए हुए हैं।

कुल संख्याओं कुर्सियों की बीस है।

दूर दूर तक सिर्फ खेत ही नजर आ रहे है।

जहां एक स्टेज है लगा हुआ है स्टेज पर मुख्य अतिथि खड़े हुए हैं।

यह थार काले रंग की है।

एक बाइक पर हम दो कुर्सियों की देख सकते हैं।

तथा हम पत्तियां भी देख सकते हैं।

यह एक कॉलोनी के एंट्रेंस के गेट का दृश्य है।

तथा हम एक पुरुष को बाहर फोन पे बात करता हुआ भी देख सकते हैं।

जिसमें बहोत हरियाली एवं बड़े बड़े पेड़--

लाइटिंग की सजावट की हुई है यह बस ऑरेंज कलर की है।

यह एक कपड़ों की दुकान का दृश्य है।

जो की पत्तियों से भरा हुआ--

इसमें हम पत्थर और नकली पेड़ भी देख सकते हैं यह कांच का बना हुआ है।

जिसकी दूसरी तरफ एक दफ्तर है।

इतनी सारी गाड़ियां देख सकते हैं। तथा लोगों लोग भी हैं। यहां हम रिक्शा मोटरसाइकिल आदि देख सकते हैं।

साइकिल का दृश्य है जिसके पुर्जे अलग किए गए हैं।

हम इसमें इंजन भी देख सकते हैं।